इसमें तीन व्यक्ति तीन चार व्यक्ति खड़े हुए है वो ऊपर तीन गई हैं।

इसमें कांच के अंदर नाँव रखी हुई है इस प्रकार ऊपर एक सूर्य बना हुआ है उस पर एक लेडीज जा रही है आ रही--

इसमें एक बंध दिख रहा है जो छडा सड़क पर रखा हुआ पीछे खेती है यहाँ कुआ है पेडे है लगे है कुछ बादल दिख रहे है।

इसमे मुझे सेवफल दिख रहे हैं कुछ ब्यक्ति बेठे हुए है पन्नी से टंगे हुए हुए है पप्पान थोड़ी मकान दिख रहा हैं पेड़ दिख रहा हैं आसमान दिख रहा हैं।